ये चित्र एक मॉल का दिखाई दे रहा है इसमें ऊपर जाने के लिए दो सीढ़ियां नजर आ रहीं हैं।

इसमें एक नाव दिखाई दे रही है जो बहुत बड़ी है।

दिखाई दे रहा है सामने नीला आसमान बहुत ही सुंदर लग रहा है।

इस चित्र में एक स्टेशनरी दिखाई दे रही है पीछे बहोत सारी बुक रखी नजर आ रही है एक व्यक्ति--

बच्चों के कपड़े भी दिख रहे हैं बच्चों के स्कूल बैग बच्चों के खिलौने नजर आ रहे हैं।

ये चित्र शिमला की पुलिस स्टेशन का है जो--

कथाई रंग का लोहे का दरवाजा दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारी--

बहुत सारी बाइकें खड़ी हैं जो काले एक काले और लाल रंग की दूसरी काली--

दिखाई दे रही हैं लाल और पीले रंग से दीवार रंगी हुई है।

लोहे का बोत बड़ा शटर दिखाई दे रहा है जो कत्थई रंग का है।

आराम करते नजर आ रहे हैं सफेद और हरे--

पेड़ नजर आ रहे हैं। एक पेड़ पर झर्विक फॉल का बोर्ड लगा हुआ है जो काले रंग का है और पीले रंग से--

इस पर लिखा हुआ है पीछे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे--

टेबल भी रखी हुई है उसपर एक व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहा है।

अ लाल और पीले रंग के गुब्बारे लगे नज़र आ रहे हैं।

ब्रिज कत्थई रंग का है इसमें एक और महिला और बच्ची जाती नजर आ रही हे ।

रखी हुई हैं दूसरी तरफ खाने का सामान है समोसे भी रखे हुएं--

ये चित्र एक मोबाइल रिपेयर की शॉप का है इसमें--

बाहर खड़ा है एक व्यक्ति अंदर खड़ा हुआ है साइड में एक सीढ़ी दिखाई दे रही है।

कुछ व्यक्ति बस के ऊपर सामान रखते नजर आ रहे हैं एक व्यक्ति बाहर--

सूटकेस पकड़ा खड़ा है एक व्यक्ति चार पांच सूटकेस किसके साथ खड़ा दिखाई दे रहा--

हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं हिरण के सामने एक जाली रखी लगी हुई है एक पीला बाँस भी लगा दिख रहा--

ये क्षेत्र एक किराना स्टोर का है। इसमें बहुत सा खाने पीने का सामान रखा हुआ है।

सामने बड़ा कार्टून भी रखा दिखाई दे रहा है एक बेग भी नजर आ रहा है।

गेट दिखाई दे रही है एक लाल रंग की बाल्टी जिसमें नीला मग्घा --

अः पीछे दुकान का शटर खुला हुआ है।